यह एक बहुत बड़ा डेम है यहा पर चारो तरफ ही बहुत सारे पेड़-पौधे लगे है बहुत घना है आसमान का रंग नीला है।

यहाँ पर बहुत सारी पोस्टर लगी हुई है दुकान है बहुत सारी बिल्डिंग है ग्रीन कलर की से और व्हाइट कलर से पेंट हुआ है आइ बी आइ_बी_आई_एफ बैंक है।